यहाँ पे घर का पिलर गाढ़ा जा रहा है और इस पिलर में सुपरवाइजर यहाँ पे देख रहा है।

और इसे बच्चे खुश भी रहते हैं। बगल में हरा-भरा घास भी दिखाई दे रहा है और इसे पेंटिंग बहुत अच्छा है और इसे लोहे का बनाई होते हैं जिसे --

यहाँ पर एक ऑटो और एक बाइक खड़ा है जो बाइक ख़राब है |